रूम की तरह लग रहा हैं यहाँ पे लेडीज बैठी हुई है उं उसके बाद ग लड़की लोग बैठी हुई हैं लड़का बैठा हुआ है फिर फ़ोटो है बोहोत ज़्यादा |

एक उ नदी की तरह है।

ये एक जिम का फोटो है जहां पे तीन कोई फोटो क्लिक कर रहा है एक कोई फोटो क्लिक कर रहा है और तीन कोई देख रहा है फिर यहाँ पे जिम की तरह बहुत अच्छे जिम लग रहे हैं एक कोई हाफ टी-सर्ट में हैं।